दृश्य मे हमे एक कार दिखाई दे रही है जिस का रंग सफेद है यह कार हमे उचे स्थान पर रखी हुई नजर आ रही है साथ ही साथ यहाँ पे हमे एक पोस्टर देखने को मिल रहा है जो की--

उसका नाम भी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है देखने से लग रहा है यह कोई स्वच्छ अभियान के लिए कार्यालय है यहां पर एक कार भी दिखाई पड़ रहा है।

दृश्य में हमें एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है या गेट का रंग पिंक है साथ ही साथ यहाँ पे हमें लाल से कुछ लिखता हुआ दिखाई दे--